पेड़ लगे हुए है और साथ में नीचे घास और यहां पर बकरिया है बहुत सारी जो घास चर रही है।

यहा कोइ प्लॉट लग रहा है जिसकी आस पास बहोत सारे पेड़ टंगे हुए है तथा यहाँ पे हरे कलर के घास भी है।

मैन तीन जने खड़े हैं एक लड़की--

एक लड़का और एक और बुढ़िया खड़ी है।

हॉस्पिटल के आगे बाइक खड़े हैं तथा इस हॉस्पिटल में--

यह एक बैंक की फोटो है जिसके ऊपर लिखा हुआ पेमेंट प्रोसेस हरियाणा ग्रामीण बैंक इसके बाहर एक--

हुए हैं और इसके इस साइड खंभा लगा हुआ था खम्भे का भी लगा हुआ है।

तथा यहाँ पे दो तीन कुर्सीयां भी पड़ी हैं और यहाँ पर एक शु लगा हुआ शु मे जो वायर भी लगी हुई है।

यह एक चार है जिसके ऊपर पेजी से कुछ नमूने से बनाए गए हैं।